यह पेट्रोल पंप का सीन और यहां पर अह कुछ दुकानों पे पाउच भी रखे हुए हैं और ये अह यहां नमकीन के पाउच हैं टंगे हुए और--

यह किसी सड़क का सीन है और यहां पर खूब बहुत सारे ऑटो खड़े हैं और एक ऑटो में एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है और अंदर बैठा है।

ये व्हाइट कलर की खड़ी है गाड़ी गाड़ी और एक यहां पे खड़ी हुई है ग्रे कलर की और कुछ आदमी हैं जो गाड़ियों की सफाई कर--

यहां सेक्टर थ्री चंडीगढ़ का सीन है और यहां पर अं हरियाणा का चंडीगढ़ और यहां पे--

यहाँ पर कुछ सीटे लगी हुई है कुछ सीध कपड़े जो होती है उसमे बहोत सारे लोग बैठे है पीछे।

और यहां पर एक नीले कलर की सीढ़ियां बनी हुई हैं और ऊपर एक ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी--

बनी हुई है बिच में गोल सर्किल है हरे रंग का उसमे पेड़ पोधे लगे हुए है पाणी वान--

और यहां पे टीचर भी खड़े हुए हैं और सामने कुछ बोर्ड लगा हुआ हैं।

क्रॉस बना के और ऊपर से ये साइन पत्तियों का इसमें साइन है ब्राउन कलर की पत्तियां है और रेड कलर का --

यह भी एक रेस्टोरेंट का सीन है यहां पर कुछ लोग बेंच पे बैठे हुए हैं कुछ लेडीज हैं कुछ जेंट्स हैं और यहां पे ऊंची-ऊंची चेयर हैं और --

की सामने की तरफ अ चार पांच इसमें यहां पे वैन खड़ी हैं।

जो यहां पर शॉपिंग कर रहे हैं और सामने की तरफ एक लेडिस है कुर्ती पहन के और रेड कलर के दुपट्टा डाल--